दृश्य के अंदर आगे कुछ बगीचे और बहोत सारे पेड़ देख पाए हैं।

एक बड़ा ब्रिज और पीछे कुछ घर और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर तस्वीर में वर्तमान दिन हो रही है।

बहोत सारे आदमी बजार करते हुए दिखाई दे रहे है एक आदमी ठेला लेते हुए जा रहा है।

तस्वीर के अंदर पीछे नीचे दिखाई दे रही है।

कुछ सामान र रखा हुआ दिखाई दे रही है।

पीछे एक बिल्डिंग और कुछ सामने लाइट का पोस्टर दिखाई दे रही है।

वहा बाहरी रूम के बाहर कुछ बाइके दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर के अंदर हम एक एयरपोर्ट का दृश्य देख पा रहे हैं।

इस तस्वीर में हम एक इंसान को बाइक में हवा देते हुए दिखाई दे रही है।

मंदिर के आगे एक छोटा सा सड़क दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर के अंदर हम दो टुकटुक देख पाए हैं।

इनमें एक आदमी एक आदमी से बातें करते हुए दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ आदमी फोटो खींचते हुए दिखाई दे रही है।

नीचे बहुत सारे आदमी उसको देखते हुए भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर के अंदर हम कुछ बेम्बु और बहोत सारे कुछ लोहे भी देख पाए हैं।

इस तस्वीर के अंदर हम एक संगीत का दुकान देख पाए हैं।

सामने एक टेबल उसके ऊपर एक ढोल और एक हेलमेट भी देख पाए हैं।

बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रही है।

के अंदर सामने एक औरत मंदिर में जाते हुए दिखाई दे रही है।

एक आदमी बातें करते हुए भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हम एक गैरेज का अंदर का एक दृश्य देख पा रहे हैं।

इस तस्वीर में हम एक स्टेडियम के अंदर का एक दृश्य देख पा रहे हैं।

इसके अंदर मंदिर बहोत अच्छे से सजा सजा हुआ देख पाए हैं।

कुछ लोग नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है।

पीछे बहुत पेड़ और कुछ और कुछ लाइट्स के पोल्स दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हम एक गैरेज का अंदर का एक दृश्य देख पा रहे हैं।

इस तस्वीर में पीछे बहोत पेड़ और बड़ा एक फील्ड दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हम एक सड़क के सामने--

कुछ बाइक अ खड़े हुए दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ स्विच बोर्ड और कुछ जिम में यूज करने करते वा जिम में यूज करने वाला कुछ चीज दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ बाल्टी और कुछ बड़े बड़े ड्रम दिखाई दे रही है।

पीछे में बहुत सारी बिल्डिंग और कुछ पेड़ दिखाई दे रही है आगे बहुत सारे कुर्सी और कुछ पत्थरे रखे हुए दिखाई दे रही है।

बहुत सारे पेड़ और पीछे एक घर दिख रहे हैं।

नीला आसमान भी दिखाई दे रही है।